इस मंदिर में एक फैन लगा हुआ है एक वॉच लगा हुआ है और यह मंदिर अभी बंद है। इस मंदिर के बाहर ताला लगा हुआ है।

यह एक जिम है जहाँ पर बहुत सारी मशीने लगी हुई है यहाँ पर लोग जिम करने के लिए आते है ताकि वो लोग फीट और हेल्दी रह सके और इसके बॉडी मेंटेन रह सके ।